इसमें बहुत सुंदर से सजाया गया है बनता होगा हर एक प्रकार का कटिंग होता है चालू किया की नहीं मैं ऐसॆ ही बोल दिया --

फल पानी वाला ही फल है नारियल का --

अम्म हा बोर्ड पे पीला बोर्ड पे ब्लैक में अक्षर बलरामपुर लिखा है हिन्दी -अंग्रेजी में --

और बगल में नए नए बाइक को खड़ा किया गया है होल सेलर लोग का बेचने का बहुत अच्छा सारा दुकान है लगता है कि एक बाइक हम भी खरीद लें बहुत सुंदर रहेगा --

और हरे पीले लाल गुलाबी कपड़े खरीद रहे है बगल में भी एक शॉप है वहाँ भी एक -दो लोग खड़े है कपड़ा खरीदने --

यहाँ एक बांध है बांध सभी गेट खुआ हुआ सब पानी आ रहा है और लगता है पहेला पहला बरसात का पानी है जो मैला मिटी के समान पानी आ रहा है बहुत सारे और बहुत ऊपर से खड़े होके उसका नजारा दे रहे है यहाँ बहुत गहरा पानी होगा --

हरे कलर का टी-शर्ट पहन के और ईधर ही सामने को देख रहा है ऐसे गेट में हरे कलर व्हाइट कलर एक से एक डिज़ाइने बना हुआ है बहुत सुंदर लग रहा है उसके नीचे कई सीढ़ियाँ अलग -अलग है लगता है कोई मंदिर का गेट है अंदर में भगवान हो सकते हैं।

और क्या बोले इसके ग्राउन्ड भी ठीक हैं ।